सामने में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ये बिल्डिंग पीले कलर की है और उसका बा बाउंड्री जो होता है वो पिंकिश है पुराने --

औ उसेपे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते है यहां पे--

और बहोत सारे व्हाइट कलर की बोरियां है जिसपे लोग उठाके कम कर रहे हैं।

नीचे कुछ बाइक भी है और दुकानों पे--

एक और चेक कलर का पहने हैं और यह पेट्रोल पंप व्हाइट कलर का है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है नीचे जमीन पे रॉड बिछे हुए हैं और वायरिंग पाइप बिछी हुई है।